और ये लाइट वगेरा लगा रहे हैं और यहाँ पे रात के प्रोग्राम होने वाला हैं और बहोत ही बड़ा प्रोग्राम देख सकते हैं और इसमें काफी मस्त व्यू दिखाई दे रहा हैं और और

हम लोग देख सकते हैं सुन्दर हैं काफी बड़े अंदर देख सकते हैं में प्लेट हैं काफी सारे बच्चे हैं। अठरह प्लस --

और देख सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे आदमी देख सकते हैं आप--

और नौ दो ग्यारह लोग दिखाई दे रहा होगा आपलोगों को पर इसमें बहोत सारे आदमी है और बहुत ही प्यारा--

अअ ड्रामा चल रहा--